पहाड़े दिख रही है चट्टाने वगैरा दिख रहे है डिज़ाइन टाइप का दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है मंदिर दिख रहे है घुमट बनी हुवी दिख रहे है रोड --

एक मकान दिख रहा है। इसपे कपड़े टंगे हुऐ दिख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है नाम दिख रहा है मीटर डोरियाँ दिख रही हैं खिड़कियाॅं दिख रही कांच की गेट लगे हुऐ दिख रहे हैं वाइट कलर का मकान है।

एक मकान दिख रहा है। गेट लगा हुवा दिख रहा है ग्रीन कलर का। नाम भी लिखा हुवा दिख रहा है। हरीशचंद्र बोस उद्यान --

बुकें दिख रही हैं। मूर्ति वगैरा दिख रही है। ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई दिख रही है। सामान दिख रहा है। तस्वीरें दिख रही हैं। गणेश जी की दिख रही है। सरस्वती जी की दिख रही है।

चश्मा लगा हुआ दिख रहा है। चेयर दिख रही हैं। लाइटें दिख रही हैं। कपड़े रखे हुए दिख रहा है। बेन्च दिख रही है। कलर दिख रहा है। लाइट दिख रही है। में कलर दिख रहा है। बहोत सारी चेयर लगी हुई दिख रही है। चश्मा लग रहा है। पीले कलर रेड --

बहोत सारी बेंच दिख रही हैं। चेयर वगैरह दिख रही हैं।

इस स्कूल का नाम लिखा हुवा दिख रहा है। गेट दिख रहा है। एक अंदर की तरफ खुला है। एक बाहर की तरफ खुला है। एक बच्चा --

आलू टमाटर गोबी धानिया दिख --